पुल भी बना दिखाई दे रहा है एक पिलर भी दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ भी लगे हुए है।

इस चित्र में बहुत सारे इंसानोकी मूर्तिया खड़ी दिख रही है उसके पीछे एक दीवार बनी है।

सामने एक बड़ी सी स्क्रीन लगी दिखाई दे रही है आस पास दिवारे पे पर लाईटे लगी हुई है।

गेट के बाहर साइड मे एक लाइट भी लगी हुई है।

कुछ बड़े प पड़े और छोटे पौधे भी लगे दिख रहे है।

इस चित्र मे कुछ झूले लगाई दिखाई दे रहे है आसपास कुच्छ पेड़ पौधे भी लगे हुए है। पीछे एक घर भी बना दिखाई दे रहा है।

सड़क पर एक कार भी जा रही है। कुच्छ कारे सड़क किनारे खड़ी हुई है। पीछे एक बडीसी बिल्डिंग भी बनी हुई है।